पीले रंग के बोर्ड में मैक सर्व लिखा है।

एक ओवर ब्रिज बना हुआ है।

बहुत सारी गाय दिखाई दे रही हैं।

एक फूल का पेड़ दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

ग्रीन कलर की होल्डिंग में लखनऊ मेट्रो सिटीज ।

व्यक्ति लाल रंग की टी शल्ट पहने हुए खड़ा है बच्चों के खिलौने वाली गाड़ी खड़ी हुई है।

कुछ बोर्ड लगे हुए हैं जिसमें एक ज्वेलर्स और एक टाटा मोटर्स और एक होंडा का बोर्ड लगा हुआ है।

एक व्यक्ति या लड़की इधर से जाते हुए दिखाई दे रही है।

इस चित्र में एक बहु मंजिला बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

यह किसी ऑफिस का चित्र है।

इसमें एक क्लास रूम जैसा एक रूम है।

एक पेटीएम का लोगो रखा हुआ है।

दीवार पर कालिंज कालीन जैसा चरित्र है।

लाल और सफेद रंग की दुकान में गुब्बारे लगे हुए --

वूमेन डिलाइट लिखा हुआ है।

वजन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तराजू रखा हुआ है।

एक बोड लगा हुआ है जहां पे जायक किचन एण्ड लाउंज लिखा हु --

इस चित्र में फूलों से सजावट की हुई है।

एक ए_सी लगी हुई है।

रोड पर काले और पीले रंग का डिवाइडर है।